ई चित्र क माईन एक औरत है एक बच्चा के साथ बैठी है और घना सार का आदमी सार बैठ्या है टेबलां ढ़ालेड़ी है ओ एक बस डिपो है।

एक बस खड़ी है और अंदर पैसेंजर है।

ई घर क माईन एक आदमी बाहर खड्यो है।

कचरा के डब्बा पड़े हैं दुआएं भी पड़ी हैं।